तथा यहां लकड़ी से बने हुए और कांच से बने हुए बहोत बड़े बड़े तीन टेबल--

इंटे से बने खड़े हुए हैं जिसमें सूचना भवन का बोर्ड भी लगा हुआ है।

सामने की ओर बहुत सारे ग्रीन कलर के बहुत सारे पर्दे भी लगे हुएं हैं।

हमें यहां एक बोट का दृश्य दिखाई दे रहा है।

जो प्लास्टिक का है और उसमें राड कलर का पेंट भी किया हुआ है।

उसमें फुले भी दर्शाए दी गई हैं।

जहां व्यक्ति खड़े हैं तथा इसके अगल बगल कई सारे व्यक्ति भी है जो कलर कई कलर के हैं।

अदृश्य हमें एक गार्डन का दिखा दे रहा है।

और दूसरी और टिने में झाड़ू भी रखे हुए हैं जो प्लास्टिक और लकड़ी से बने हैं।

बहुत सारे कलरफुल बैलून भी लगे हुए हैं।

और इसमें एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है जो पानी चढ़ा रहा है।

रस्ते का दृश्य दिखाई दे रहा हैं जो कच्चा है।